इसमें काफ़ी सारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जिसपे कुछ पहाड़ों पर बर्फ दिखाई दे रही--

फोटो है जो की काफी बड़ी चर्च है।

ये इसके पीछे जो अ बैकग्राउंड की पिक्चर है जिसपे पेड़--